छोटा सा गांव लग रहा है ये एक।

काफी नया नया दिख रहा है दो।

ऊपर ए_सी भी लग रखा है।

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

दो लड़के बात कर रहे हैं।

काफी बड़ा रेलवे स्टेशन लग रहा है।

जैसे कि मैं इस इमेज में देख पा रहा हूं ये एक दुर्गा पूजा का पंडाल है।

तो जैसा कि मैं इस इमेज में समझ पा रहा हूं यहां पे काफी सारी मछलियां पकड़ी है अंकल ने या फिर कई लोगों ने पड़ी होगी अलग अलग तरह की।

यहां पे अंकल बैठे हुए हैं शायद अभी यहां पे बेचने वाले हैं क्योंकि सामने के अंकल का पैर दिख रहा है।

वो शायद खरीदने के लिए आए हैं।

बकेट में भी काफी सारी मछलियां रखी हुई है।

सामने एक एरो बना हुआ है जहां पे साइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है।

ऊपर लाइट भी जल रही है।

दीवार काफी गंदी दिख रही है।

जंगल के बीच में एक छपरा जैसा कुछ बनाया गया है।

पीछे एक बकरी चर रही है और इधर एक पेड़ है जो काफी बड़ा है और खूबसूरत सा पेड़ है।

वहां पे साइड में अह काफी सारे कलर लगाए गए हैं और सड़क में कोई गाड़ी तो नजर आ नहीं रही है।

बैठे हुए हैं कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं।

यहां पे एक छोटी सी कच्ची सड़क है।

घर पे घर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो ठीक से कुछ समझ तो नहीं आ रहा है।

काफी सुंदर दिख रहे हैं ये सब कुछ--

यहां पे काफी सारे लोग आए हुए हैं तीन चार और पीछे एक अंकल काम कर रहे।

सामने एक दुकान में एक अंकल हैं जो बेच रहे हैं सामान बेच रहे हैं बुक वुक स वगैरा।

साइड में क्यू_आर कोड लगा हुआ है।

ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

नीचे एक चेयर है जहां पे उसके सामने एक टेबल भी है।

कजारिया टान ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड नाम का एक दुकान है।

यह ग्रील लगी हुई है यहाँ उसके ऊपर टाइल्स लगाए गए हैं।

साइड में काफी सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

यहां पर बहुत सारे फुल वेंगरा दिए गए हैं और साइड में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

कोल्ड्रिंक्स रखी हुई हैं जैसे पानी फ्रूटी स्प्राइट रीयल फिर यहां पे सोनपापड़ी बिक बिट।

मुरमुरा ऐसा कुछ कुरकुरे वगैरा रखा गया है।

कुछ तबला बजा रहे हैं कुछ पियानो बजा रहे है कुछ पीछे खड़े हैं।

इधर एक साइड में हारमोनियम भी बजा रहे--

छोटा सा गांव लग रहा है।